यह एक सोने श्रृंगार सदन एंड गिफ्ट कार्नर की दुकान है।

यहाँ पर गिफ्ट्स से देने वाले छोटे-छोटे मोठे आइटम भी प्रोवाइड किए जाते है।

किसी के जन्मदिन या शादी पर दिए--

ये बिल्डिंग की बहोत ही सुंदर डिजाइनिंग की वजह से ये बिल्डिंग बहोत ही सुंदर प्रतीत होती दिखाई दे रही है।

जो की उसी के रंगो की कलर की बनी हुई है जो की सुंदर प्रतीत--

बुल पूल से बांध के पूल से पानी की सीमा कमी दिखाई दे रही है तथा--

उसी मंदिर के सामने एक दूसरी इमारत भी बनी हुवी है जो की बहोत प्रचीन काल बनी हुवी स्तित मूर्ति --

मेन्स विमेंस अण्ड किड्स ऐसे तीन फ्लेवर में कन्वर्ट किया गया है।

यह एक पार्क का सामुहिक चित्र है जिसके ऊपर एक छोटा-सा ब्रिज बनाया गया है ब्रिज पे से गुजरकर--

साथ ही साथ वहाँ पर बहोत सारी महिलायें पुरुष बच्चे वगैरा --

हरे - हरे पेड़ के साथ अपने मनोरंजन को अच्छा बना रहै है।

ये सामने शटर बंद हैं तथा उसके क्रिया करने की क्रिया पद्धति चल रही हैं तथा--

निकलना लगा हुआ है किसी मंदिर की पूजा होने की वजह से-

पादरी का मकान भी है और चर्च को तीन पार्ट्स मे डीवाइडेड किया गया है।

यह एक नदी के पास का सामुहिक चित्र है जिसमे से नदी में से पानी बेह रहा है जो की सुंदरता को बढ़ा रहा है।

यह एक सलून की दुकान है जिसके बाहर बहोत सुंदर सी सजावट हो रही है जिसके बाहर बहोत सी चेयर रखी हुई है।

जो इसके सुंदर शोभा को बढ़ा रहा है ताकि बड़े - बड़े रूप में इसको --

एक लोग पसंद करे और लोग इसके अंदर आने जाने की क्रिया को बना के रक--

कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है जिसमे महिलाये अपनी मस्ती के आधार पर नाच रही है खेल रही है कूद रही है।

ये सामूहिक कार्यक्रम है जिसमे पुरुष स्त्री बच्चे वृद्ध--

जनरेटिक सामान भी दिखाई दे रहा है जो की इसकी व्यवस्था को बनाए हुए है इसमें एक कैश काउंटर भी है।

उसके सुंदर शोभा बढ़ा रहे है तथा उसके साथ ही साथ उसका ध्यान भी रही है।

सेम दॄश्य दिखाई दे रहा है वो महिला बड़ी उमंग के साथ इस नृत्य को--

ये एक सर्विस सेंटर है जोकि आईडिया के दिखाई दे रहा है जोकि एक सुंदर रूप में सुशोभित हो रहा हैं।

कैलेंडर तक तंग रहा है जो उसकी शोभा को अत्यंत सुंदर बना रहे हैं।